गाड़ी जइ तई एगो आधा आधा लउकतई ।

ई लगते खाय पीए के हई गोल-गोल कुछ बनल हई सेवेन लिक्खलई सात और एच वि कुछ हई और आदमी सब अंदर है लाइट एकदम जगमग-जगमग करती है अंदर आदमी सब हैं काला रंग --

लाइट वाइट मांगल हई एक दम जग-मग ब्लू रंग के --

ई लगते कुत्ता उत्ता काट लेले होतइ दौड़ते उड़ते होतइ फोड़ लेले घुटना दुन्नु पैर के अच्छा लागतई बैक खुरखुरइते होतइ और का होतइ रहइ द ई पीछे के लगतै कोई पेपर पढ़तई टाँग उठा के रखले हई।